बाउनडरी वाल के सामने बहुत घना जंगल दिख रहा है। एक बल्ली का मचान टाइप बना हुआ है। इस पे कोई जानवर का बच्चा जेसे भी दिख रहा है। पेड़ो की पत्तिया अभी नीचे गिरी हुई है।

यहां पर एक हाल में जिम का केंद्र बनाया है। जिम की बड़ी-बड़ी मशीने रखी हुई है। एक व्यक्ति जिम कर रहा है।

यहाँं पर एक बहुत बड़ी नदी दिख रही है। नदी का जल नीले कलर का दिख रहा है। नदी में एक नाव दिख रही है।

यहाँं पर एक शेर दिखाई दे रहा है। शेर भूरे कलर का दिख रहा है। शेर जालीदार पिंजरे में बंद है।

यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग दिख रही है | ऐसा लगता है अंदर धर्मशाला है।

यहाँ पर एक बैंक का ए.टी.एम. दिख रहा है। ए.टी.एम. का गेट कांच का बना हुआ है। ए.टी.एम. के गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

हाल में महिलाएं पुरुष और बच्चे दिख रहे हैं वे सभी व्याम कर रहे हैं। व्याम में सभी ने एक पैर मोड़ा है और दोनों हाथ ऊपर करे हुए हं --

यहाँ महिलाओं की ब्यूटी पार्लर दिख रही है। दीवाल येलो कलर की दिख रही है। एक बड़ा आइना दिख रहा है।